यहाँ पर काफी सारे खम्भे है नेट लगी हुई है।

जैसे की इस इमेज मे शो हो रहा है एक तालाब है तालाब के अंदर एक नाव है इसकी तालाब की--

जैसे की इस इमेज मे शो हो रहा है यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है।